इक स्कूटी का सीट एक आदमी खोल रहा है।

बहुत सारे बैनर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बैंक का दिखाई दे रहा है।

बैंक के ऊपर एक पोस्टर लगा है जिस पर बैंक का नाम लिखा है।

यह फोटो दिन का है।

जमीन में टाइल्स लगी हुई है।

स्टेशन के ऊपर छत नीले रंग से बनाया गया है।

बहुत सारे नल लगाए गए हैं।

आदमी कुर्सी लेके बाहर बैठे हैं।

बहुत सारे लोग खड़े है।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

दुकान में सब्जी रखा हुआ है।

पानी का रंग नीला है।

इस फोटो मे एक किताबों की दुकान दिखाई दे रही है।

बहुत सारी किताब रखे हुए हैं।

इस फोटो पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

दो खंभे दिखाई दे रहे हैं जिस पर लाइट लगा हुआ है।

सीलिंग में बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे आ आदमी खड़े हैं।

पीछे बहुत सारे केले के पेड़ दिखाई दे रहे--

इक दुकान में अनेक सब्जियां रखी हुई है अनेक प्रकार की।

इस फोटो में बहुत सारे चावल के बोरे दिखाई दे रहे हैं।